यहाँ पे एक लड़के के साइड में खड़े है। ये डिजाईन है बाल का लड़के को देख सकते हैं इधर बाहर में फिर बोर्ड सारे लगा हुआ है| अच्छे से सैलून सजाया गया है। यहाँ पे देख सकते है फेस वाश करने --

यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग तैयार हो रही है। यहां पे एक आदमी खड़े हैं।

ये एक बड़ा-सा बिल्डिंग है। इसमें --